इस फोटो में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनमें से एक आदमी ने हाथ में अपने मोबाइल पकड़ रखा है।

और ओ एक फोटो खींच रहा है साथ में ही उसके हाथ में एक घड़ी है।

और पीछे की दीवाल का रंग पीला है।

जिसमें अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम रखी हुई हैं।

इस फोटो मे दो बोट दिखाई दे रही हैं।

एक बोट बड़ी है और दूसरी बोट छोटी है।

इस फोटो में पानी भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला है।

और आसमान का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

इसमें एक टेबल लगी हुई है।

इसमें एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है।

पानी का रंग हरा समझ में आ रहा है।

इस फोटो में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग हरा है।

इन पौधों के बीच से एक रोड भी जा रही है जिस पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

पीछे एक आदमी भी खड़ा है और पीछे जो दीवाल है।

ये एक चर्च है जहां पर एक महिला खड़ी होकर--

यहां पर दो तीन बल्ब भी लगे हुए हैं।

पीछे जमीन पर एक हरी कलर की चादर भी बिछी हुई है।

यहां पर पीछे हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक कॉफी की दुकान दिखाई दे रही है।

पीछे एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

एक माइक्रोवेव भी दिखाई दे रहा है।

बीच में एक आदमी खड़ा है जो दूसरे आदमी को कॉफी दे रहा है।

इस फोटो में अलग अलग प्रकार के चार्ट पेपर दिखाई दे रहें हैं।

उनके पीछे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

जो की काले रंग की हैं उनके पीछे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो की हरे रंग का है।

इस फोटो में एक कप दिखाई दे रहा है जिसमें कॉफी है।

इस फोटो में अलग अलग रंग के डोर मेट दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर साथ में ही कुछ कंबल भी रखे हुए हैं जो कि एक झोले में बंद हैं।

यहां पर जमीन पर टाइल्स लगी हुई है जिसका रंग सफेद है।

जो की लाल रंग की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं जमीन का रंग लाल है।

और पीछे ही एक घर भी दिखाई दे रहा है और आसमान का रंग नीला है।

इस फोटो में एक काली कलर की प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर खाने का सामान रखा हुआ है।

और साथ में ही यहां पे दो तीन चम्मच रखे हुए हैं।

इसमें बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं जो कपड़े सामने लगे हुए हैं उनका कलर लाल है।

और इनमें कुर्सियां भी रखी हुई हैं जिनका रंग लाल है।

इस फोटो में दो आदमी और एक औरत दिखाई दे रहीं हैं जिनमें दो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

इनके आगे एक टेबल रखी हुई है जिसपे फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है।

इस फोटो मे एक दुकान दिखाई दे रही है।

ये दुकान कांच की बनी हैं।

उसके पीछे एक मंदिर दिखाई दे रही है।

इस फोटो को देखकर समझ आ रहा है कि एक मेकअप और ब्यूटी का सालोन है।

साथ में ही दो तीन क्यू_आर कोड भी रखें हुए हैं।